यहां पर बैंक का दृश्य देख रहा है बैंक के बगल में बड़ा सा रोड है।

यहां पर है बहुत बड़ा सा गो डाउन का दृश्य दिख रहा है गो डाउन के अन्दर बहुत सा बोरी रखा हुआ है और वो पूरा अंधेरा है।

जंगल के अंदर बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और बहोत सारे पत्थल है।

बैटरी टांगा हुआ है सिंदूर टांगा हुआ है।

बगल में पानी का जार रखा हुआ है।

लाइब्रेरी का दृश्य देख रहे इसमें बहुत सारे रेक बनाए हुए हैं।

और उसे ऑन ऑफ करने के लिए अंदर में बहोत सारे तारे लगाए हुए हैं।

पोस्टर लगाया हुआ है उस पर विनय वस्त्रालय लिखा हुआ और उसे पर कई सारे दृश्य देख रहा है।

बाइक लगाया हुआ है और अंदर में बहुत सारा साड़ी रखा हुआ है।

नीचे मे गेट है जो ब्लैक कलर की है बैठने का जगह है।

इसका कलर वाइट कलर का है और ऊपर रेलिंग ऑरेंज कलर का किया हुआ--

एक आदमी खड़ा है मंदिर के बाहर वो पिंक कलर का टीशर्ट और पेंट पहना है।

बगल में एक लोहे का खंभा गाड़ा हुआ है।

नीचे छोटा छोटा घास है उसपे बोतल फेंका हुआ है।

तार इधर उधर लगाया हुआ है लाइट बहोत सारा बाहर मे जल रहा है।

नीचे टेबल लगाया हुआ है और इसमें बहोत सारे लाइटे जल रही है पंखा चल रहा है बगल में खिड़की लगाया हुआ है वो भी व्हाइट कलर का।

कोई ब्लू कलर का शर्ट पहना है तो कोई व्हाइट कलर का शर्ट पहना है बगल में भी दुकान है उसपे कशटल रखा हुआ है।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

पंखा चल रहा है और इसके अंदर बहोत बड़ा बड़ा रैक बनाया हुआ है।

बड़ा बड़ा डब्बा में पंखा रखा हुआ है।